और कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बेड के ऊपर एक जगह इकट्ठा ग्रीन कलर की बेड शीट रखी हुई दिखाई दे रही हैं।